यहाँ पर बेड लगाया हुआ है टी.वी. भी है बहुत ही कम्फ़र्टेबल रूम है।

इस रूम में गर्मी बिलकुल नहीं लगता है और ठंडा भी ज्यादा नहीं लगता है ।

ए आजाद ब्लॉक है यहाँ बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग है।

फोर व्हीलर हो टू व्हीलर हो और फिर बड़ा-बड़ा ट्रक वगैरा का भी टायर बेचा जाता है।

यह एक झील है और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पानी उपलब्ध है और यहाँ पर पार्क जैसा लगाया गया है ताकि आदमी आके यहाँ पे घूमे और अच्छे से --

ताकि हमारे समाज को आगे बढ़ने में कोई कठिनाई ना आए ।